इस इस इमेज में दर्शाया गया है कि यह एक कैफे है।

इस कैफे के अंदर चेयर टेबल रखी हुई हैं।

वहां पर एक जो कमरा है।

इस इमेज से पता चल रहा है कि यह किसी का घर है।

यहां पर वाइट कलर की दीवार है उस पर बुद्धदेव की इमेज बनी हुई है।

वहां पर ग्रीन कलर की दीवार है और नीचे फर्श है।

दुकान पर बहुत सारी नमकीन बिस्किट और टेडी बियर लटके हुए हैं।

पीछे की साइड मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और वहां--

इसके बाहर तो आदमी खड़े हैं एक आदमी चेयर पे बैठा है उसके बाद दो बाइक खड़ी हुई है।